हैंडिल दिखाई दे रहा है एक आदमी दिखाई दे रहा है ।

साईकिल भी हमें दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है एक कार दिखाई दे रहा है।

जो अ नीले कलर का है और हरी-हरी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

भी दिखाई दे रहा है थार भी दिखाई दे रहे हैं और घर पर्दा दिखाई दे रहा है जिसका कलर पीला है।

और टायर दिखाई दे रहे हैं जो काले कलर के हैं और एक खम्बा दिखाई दे रहा है।

हरी-हरी घास हमें दिखाई दे रही है ।